कुछ समान है खिलौने भी हैं।

अंडन मे घर है मेन गेट है इसमें ग्रील लगे हुए हैं।

घर है जिसमे रोड निकले हुए है।

मे बोहोत सारे टेबल कुर्सी लगे हुए हैं।